यहाँ पे हम देख रहे है सोफ़े भी है सोफ़े । सोफों पे यहाँ पे एक बैग रखा हुए है बड़ा यहाँ पे पंखा भी देख रहे है हमे यहाँ पे रेड कलर की लाइटे भी लगी हुई है दो।

ये एक एस.बी.आई. बैंक है एस.बी.आई. बैंक के ए.टी.एम. के बाहर भी ए.टी.एम. भी है हमारे बराबर में।

यो भी एक हेयर कट की दुकान हैं यह पे बाल कटते है। इसके बराबर में लिखा है माँ सीता --